यहाँ पर साइडों मे चेयर्स और टेबल भी देखने को मिल रही है सेंटर भी इधर हमे देखने को मिल रहा है।

ये फोटो हमे किसी बिल्डिंग की देखने को मिल रही है बिल्डिंग व्हाइट कलर की है ऊपर की तरफ खुला आसमान हमे इसमें देखने को मिल रहा है।

बिल्डिंग मे हमे बहुत सारी खिड़किया देखने को मिल रही है और ये किसी स्कूल का एरिया हमे देखने को इसमें मिल रहा है और ये देखने में सुंदर प्रतीत हो रहा है।

यह फोटो हमे किसी बहार के एरिया की देखने को मिल रही है।